देखिए हमें एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ हमें जगमगाती लाइट जल रही दिखाई दे रही है यहाँ पर बल्ब भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक आपको होम भी दिखाई दे रहा है येलो येलो हमे यहाँ पे हाउस भी दिखाई दे रहा है।

हरा-हरा पेड़ दिखाई दे रहा है। हमे आ-आसमान दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पर एक थोक दीवार भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमे दीवार दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर एक लड़का ट्रेन मे बैठा हुआ दिखाई दे रही है। ट्रेन भी दिखाई--

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे छत्री दिखाई दे रही है हमे यहाँ पर खम्बे दिखाई दे रहा है हमे एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाइ दे रहा है हमे पटरी दिखाय दे रही है पटरी में हमें राइट साइड में व्यक्ति दिखाय दे रहे है हरे-हरे पेड़ दिखाय दे रहे है आसमान दिखाय दे रहा है एक ब्रिज भी दिखाय दे रहा हैं।

हमे एक दिखाई दे रही है हमे यहाँ पर क्लोन भी दिखाई दे रही है हमे टावर भी दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहे है दोपहर का टाइम है हम यहाँ पर हमे--

यहाॅं पर हमें एक अ-अ-अ-मम्मम घर दिखाई दे रहा है एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है हमें यहाॅं पर ट्रक भी खड़ा दिखाई रहा है हमें एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है।